यहां पर तीन बच्चे खडे होकर डांस करते दिख रहे है जिसमे एक क्यूट सी लड़की है और दो लड़के है।

हॉल दिखाई दे रहा है नीचे टाइल्स लगी हुई है ऊपर की ओर देखिएगा तो काफी सारी लाइटें जल रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है।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

दुकान दिखाई दे रही है जिस पे बांधड़ी लिखा हुआ है और यहां पर साइड में कुछ चूड़ियां और मेकअप किट नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर ऊपर बहुत सारी --

कुछ पौधे लगे हुए हैं लाइन से जो काफी सुंदर लग रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा हॉल --

दिखाई दे रहा है नीचे देखिएगा एक आदमी लेटा हुआ हैं और दूसरा आदमी उसका चेकअप कर रहा हैं।

अ अं गाड़ी खड़ी है गेट दिख रहा है जहां पर केंद्र लिखा हुआ है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर देखिएगा तो भगवान की कई सारी मूर्ति दिख रही है।

इस इमेज में देखिएगा तो यहां पर एक पुराना सा किला --

जहां माता की मूर्ति रखी हुई है और एक पुजारी दिखाई दे रहे हैं जो पूजा कर रहे हैं नीचे काफी सारे लोग --

और यहां पर बहुत सारे लोग मोबाइल से रावण को फोटो खींचते हुए--